यहाँ पे एक मेढक दिखाई दे रहा है जिसका शरीर पानी के अंदर है और उसका मुह पानी से बाहर दिखाई दे रहा है।

कांच का कमरा बनाया गया है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है जिसपे इंडियन कोबरा लिखा हुआ है अंदर की तरफ हमे एक लकड़ी दिखाई दे रही है एक थोड़ा सा पानी भरा हुआ है।

सभी लोगो ने मास्क लगाया हुआ है यहाँ पर एक कंप्युटर लगाया गया है जिसमें ये डॉक्टर सोनोग्राफी कर कर देखता हुआ दिख रहा है साइड मे एक टेबल लगी है जिसपे कुछ फाइले पड़ी हुई।

ये एक चर्च दिखाई दे रहा है चर्च के अंदर भगवान जी की एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

पर एक घर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक आदमी एक सीडीओ को लगाकर ऊपर की तरफ चढ़कर आईटीओ को लगता हुआ दिख रहा है।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

यहाँ पर हमे एक कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है एक टेबल लगाई गई है जो काले रंग की है टेबल की साइड में चेयर लगाकर दो लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने टेबल पर एक पानी की बोटल दो काफी के मग और बाउल में कुछ मिल दिखाई दे रहा है।

ये बहोत बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमेनीचे ज़मीन पर बहोत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे नीचे हरे रंग की पत्ती बिछाइ गई है सामने एक बड़ा सा गेट दिख रहा है जिसके ऊपर प्रणाम लिखा हुआ है।

जिसपे हाथ में एक फ़ॉर्म पकड़ा हुआ है सामने की तरफ एक खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की कि पास एक पेटी रखी हुई है जिसे वो औरत कुछ समान निकालती हुई दिख रही है।